कलर की वॉल दिख रहा है।

ऊपर में लाइट जला हुआ है।

मनुष्यों का फेस ब्लर किया गया है।

पीकर को गाड़ी पे रखा है।

और ब्लू कलर की गेट भी दिख रहा है।

दाहिने तरफ एक स्विमिंग का स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है।

रस्सी भी दिख रहा है।

एमें दरवाजे भी दिख रहा हैं।

और में थ्री सिक्टी सैलून लिखा हुआ है।

सामने का कुर्सी पीला रंग का है।

इंसान का फेस ब्लर किया गया हैं।

इसमें में मुझे कमरा नजर आ रहा है।

राइट साइड में दारू की बोतल भी दिख रहा है।

बहुत सारे ऑटो भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है।

दाहिने तरफ री दीवार का रंग पिला है।

और एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है।

इसका रंग ग्रे कलर की है।

और दो और तीन ए_टी_एम भी हैं।

जिसमें बहुत सारे खिड़कियां भी है।

पीछे में वॉल के ऊपर एक फोटो भी दिख रहा है।

आगे रास्ता के अगल बगल हरा रंग का मैदान भी है पहाड़ भी दिखाई दे रहा है।

सामने मैदान के दाएं तरफ बाइक और स्कूटी भी रखे हुए है दाएं तरफ हरा रंग का घास भी है।

एक इंसान चल रहा है एक इंसान पीला रंग का प्लास्टिक पकड़ा हुआ है।

तस्वीर में मुझे बहुत बड़ा बड़ा बास्केट दिखाई दे रहा है।